नीचे कुछ लगा हुआ है जो की ब्राउन रंग का है।

अगल बगल दो लाइट्स भी लगे हुए हैं।

ज्यादातर टेंट का रंग ग्रे है।

और दूर कुछ और भी टेंट हैं और बहुत से जंगल हैं।

यह बहोत सी मट्टी है।

इस फोटो में एक बहोत ही बड़ी नदी पार हुई है।

बहुत सारे हरे हरे बड़े पेड़ है।

इस फोटो में सामने एक बड़ा है दीवाल है।

और किनारे किनारे दो छोटे बास लगे हैं।

जो जिस पे बहोत से बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं।

बगल में एक ट्रैक्टर भी लगा हुआ है।

ज्यादातर इनमें से छोटे छोटे बच्चे हैं।

और बहोत से छोटे छोटे मूर्तियां और बहोत सी लाइटें लगी हुई है।

इस फोटो में एक बड़ा सा मैदान है।

इसकी घास सूख चुकी है।

में से ज्यादातर लोगों ने जैकेट पहन रखा है।

बहुत से पोल गढ़े हुए हैं।

इस फोटो में एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है।

आसमान का रंग सफेद जैसा है।

बादल सफेद रंग के हैं।

दूर एक बहोत बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

एक आदमी है जिसका हाथ टूटा हुआ है।

उसने हाथ में पट्टी बांध रखा है।

हमने की तरफ एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है।

पीछे भी एक सफेद रंग का कोई बिल्डिंग है।

बगल की दीवाल पर एक छोटा सा पोस्टर है जो की पीले रंग का है।

और उसमें लाल रंग से पेंट किया गया है।

जिसके अंदर एक जे_सी_बी है।

जो कि पीले रंग का है।

इस फोटो में एक छोटा सा झरना है।

आसमान हल्का नीला और हल्का सफेद है।

बाहर की तरफ कुछ लोग हैं।

अगल बगल बहुत सारे कपड़े भी रखे हुए हैं।

बहोत सारे लोग अंदर कुर्सी पर बैठे हैं।

इसमें ऊपर पोस्टर लगा हुआ है।

ऊपर से पाइप पार हुआ है।

बहुत से लंबे लंबे पेड़ हैं।

पेड़ हरे रंग के हैं।